मैं फिर दिखेगी सफेद रंग की एक बिल्डिंग कर छा दिखेणी जे पर येकु ग्रिल छ लगायूं एंच बिटिन कालू कालू कुछ छ दिखेणु।

वैका साइड मा जू छ गुलाब का फूल छन दिखेण पिछाड़ी बिटिन एक डालु छ दिखेणु और हर हरी रंग की चदर छ दिखेणी।

अर काफी सूंदर छन लाग्यां यूँ का अलग अलग करि की की काफी मिक्स ना हुन यूँ अर यू जु छ एक भिड़ी छ भिड़ी पर यूँ का अटैच छ करयां यूँ गमला।

जु कि भगवान जी की मूर्ती छा अर निसान बटिन यूँका भक्त छन जु यी थे उठाण छन लग्यां अर निसान बटिन पंडित जी भी खड़ा छन हुंया पिछाड़ी जु छ मै घर छ दिखेणु जेफण द्वी चार टंकी छ दिखेणी एक द्वी नीले रंग की एक सफ़ेद रंग की।